गॅली गई हुई है। गॅली टाइप की यहा पर गॅली मे ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है। ऊपर छत है। छु छत मे सफेद कलर पोता हुवा--

यहा पर फॅने लगा हुआ है एक फॅन लगा हुआ है ये देखने मे लगा रहा है ये दिन का सीन है सामने वे एक बाजू मे एक बूट दिखाई दे रहा है। इलेक्ट --

हमने एक शॉप दिखाई वह सारी शॉप दिखाई दे रही है यह देखने मे लग रहा है कि ये रात का सीन है यहाँ पर बहुत सारी लाइट जल रही है।

एक सामने मस्जिद सी दिखाई दे रही है इस मे सफेद कलर दिखाई दे रहा है इस मे दो पिलर खड़े हुए है।

यहा पर बोहोत सारी दुकान लगी हुई है। देखने मे लग रहा है ये है। सामने दुकान खड़ी हुई है। जिस का कलर सफेद है। यहा पर बहुत सारी बाइक स्कूटी खड़ी हुई है।